अ गुमज ग्रीन कलर के है फिर उसमें डिजाइंस भी गुमज के कुछ बने हुए ग्रीन कलर्स के नीचे शॉप्स है जिसमें बहोत सारे लोग है और कोई दुकान का नाम है इसमें।

ये एक कारपोरेशन है जिसमे बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं और ऑटो खड़ा है वाइट कलर का बिल्डिंग है ओर ब्लैक कलर का से लिखा हुआ है और बहुत सारे पेड़ पौधे है इसमें |

ये एक मन्दिर है जिसमे जो व्हाइट कलर की बिल्डिंगस है इसमे सुनहरे बोर्डस है रेड बोर्डस है दो खिड्कि है रेड कलर की बोर्डस किए हुए है।

इसमे ब्लू कलर का बोर्ड है व्हाइट कलर से लिखा हुआ है सामने एक छोटा सा घर है सामने पेड़-पौधे नजर आ रहे है दो खिड़कियां --

आखिर यह सीढ़ियां है ब्राउन कलर की और बाहर फर्श बिछा है रेड कलर का कारपेट है और स्वर्ण कलर जो है उसको लाइटिंग से डेकोरेट किआ गया है और स बगल मे एक खिड़की है उसके बगल मे एक --

ये एक एक किला टाइप का है जिसके इतने सारे खिड़कियाँ है बहोत सारे बहोत सारे दरवाजे हैं मैदान है जिस --

इनमे साइकिल रखा हुआ है और ग्रीन कलर का ग्रास है और बहुत सारे लोग खड़े है और ऊपर में कुछ कुछ लिखा हुआ है।

मस्जिद के दो गुम्बज ए-- पिलरस् हैं। और खिड़किया बहुत सारी हैं साइड में पीछे पेड़ भी बहुत सारा हैं।